और यह पर किसान ने बोहोत अच्छे से खेती यह की उपज भी बोहोत अच्छी है और बोहोत अच्छी-अच्छी सब्जिया यहां पे उगाया गया है।

सिखाने वाले भी बहुत अच्छे-अच्छे ट्रेनर जो हैं यहाँ पर आ के अपने-अपने शरीर को स्वस्थ एवं तंदरुस्त कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है।

स्वास्थ के लिए बोहोत ही लाभदायक सब्जियां होती हैं। यहाँ के किसान बहुत ही अच्छे आर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं और खेती करते हैं और शरीर के लिए बोहोत ही लाभदायक एवं उपयुक्त सब्जियां है।

जो शहर के मध्य में स्थित है जो यहाँ पर लोग शाम में घूमने के लिए आते हैं और अपना ह टाइम स्पेंड करते हैं।